ये बहुत बड़ा घर है।

यह बहुत बड़ा दुकान है।

ऊपर में बहुत सारा सफेद कलर का लाइट लगा हुआ है।

नीचे हरा कलर का दरी बिछाया हुआ है।

वोल्टेज का एक फ्रिज लगा हुआ है।

यहां दीवाल में एक लाइट लगा हुआ है जो सफेद कलर का है।

यह एक पेटीएम का भी पोस्टर लगा हुआ है।

यह कार हैयह लाल कलर का है।

यहां दो आदमी है एक आदमी नीचे बैठा हुआ है जो बाल्टी पकड़े है।

यहां बगल मे बहुत बडा बडा शीशा लगा हुआ है।

यह एक ऐ_सी भी है जो सफेद कलर का है।

एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है जो सफेल कलर का पैंट पहना हुआ है।

हाथ में बहुत सारी चूड़ी पहनी हुई है।

एक ब्रेड है एक पत्ता भी है।

बगल में एक ब्लू कलर का कुर्सी है।

यहाँ एक आदमी है जो ब्ल्यू कलर का टी सर्ट पहना हुआ है ।

वहां बहुत सारा आदमी है।

यहां बहुत सारा लोहा का गेट लगा हुआ है।

यहां एक आदमी चप्पल पहना हुआ है।

यहां एक नीचे भी बच्चा जो सफेद कलर का पेंट पहना हुआ है जो काला कलर का शर्ट पहना हुआ है।

एक मूर्ति जैसा बना हुआ है जो लाल कलर का है।

बीच में एक आम का पेड़ है।

यहां कांच का शिशा में एक कागज का पोस्टर चिपकाए हुआ है।

यह बहुत सारा प्लेट है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है जो सफेद कलर का है और बहुत छोटा है।

यहां बहुत सारा शैम्पू का और फेसवॉश का डिब्बा है।